यहाँ पर संस्कार धनि आगमन पर सत सत अभिनंदन नगर पालिका से से निगम राजनन्द गांव छतरपुर लिखा हुआ नजर आ रहा हैं बह--

हम्म बादल भी दिखाई दे रहा है हरे कलर की कुछ दूर्वा भी नज़र आई है पत्थर के ऊपर कुछ व्यक्ति खड़े हुए है।

बहोत बड़ा पार्क लग रहा है बहोत सारे पेड़ लगे हुए है बहोत सुन्दर-सुन्दर फूल लगे हुए है बहोत सारे व्यक्ति है औरते भी है बच्चे भी है एक बच्चा पीले कलर का पेंट शर्ट पहने हुए है।

कमर पे हाथ रखे हुए है रेड कलर के पेंट पहने हुए है एक व्यक्ति के दो हाथ दिखाई दे रहे है जूता भी पहने हुए है।

यहाँ पर एक व्यक्ति की शेविंग बनती हुई नज़र आ रही है ज चेयर पे बैठी हुए है।

मसाले बनाने वाली मशीन भी रखी हुई है कुछ व्यक्ति तसलो मे भर के चढ़ते नजर आ रहे हैं ।